व्हाइट रंग से वॉल किया हुआ है कलर पेंट .

जो कि दो जगह को जोड़ती है.

बहुत सारे स्कीम के आउटलेट लगे हुई हे.

यह क्रिश्चियन कम्युनिटी का गिरजाघर है.

और बल्ब उसमें सारे जल रहे हैं.

और सारी लाइटें ओन है दुकान की.

दो भैंसे जा रही है एक महिला है.

गाड़ी भी धोया जा रहा है.

बगल में टिकिया रखे हुए हैं थम्स अप है नमक है.

पापड़ी वगैरा भी है सारे खाने का सामान सजे हुए हैं.

यहाँ लोग पिकनिक के लिए जाते हे.

और चारो तरफ हरियाली बगीचे है.

कुछ समान बहार रखा हुआ हे ग्रोसरी का.

यह चाय का स्टॉल है.

कस्टमर को बैठने के लिए ज बेंचे खड़ी है.

और एक पैसेंजर ट्रेन है दो एक्सप्रेस है.

ये किसी सेमिनार हो रहा हे कुछ व्यक्ति खड़े है कुछ बैठे हुए हैं.

कुछ कारे खड़ी है कुछ मोटरसाइकल कुछ स्कूटी

और कुछ लाइटे जल रही है.

महिले है पुरुष बच्चे है.

ये एक जरने का स्पॉट है.

ये एक लाइब्रेरी हे जिसमे ऑनलाइन लाइब्रेरी जिसमे --

और बैग ऊपर में रखी हुई है.

सामने मे भी कुछ छोटी-छोटी दुकानें हैं.

उसमें दूल्हा दुल्हन के लिए चेयर लगे हुए हैं.

फूल के गुलदस्ते लगे हुए हैं.